झाड़ का रंग हरा हैं ऊपर आसमान है जिसका रंग सफ़ेद हैं।

फूल लगे हुए है ऊपर आसमान है जिसका रंग सफ़ेद हे।

पिछे बड़े-बड़े पेड़ है ऊपर आसमान है आसमान रंग सफ़ेद दिख रहा है और यहाँ पर दो--

और यहाँ पर दीवारे दिख रही है दिवारो का रंग गुलाबी है दो लैम्प लगे हुए है ऊपर मालाए लटकी --

यहाँ पर रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही है पटरी लोहे की है जिसका रंग काला है।

यहाँ पर एक मैदान हे मैदान मे लाल मिट्टी पड़ी हुए हे मिट्टी पर थोड़ा-सा कचरा पड़ा हुआ हे।

यहाँ पर एक बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है लोहे की बहोत बड़ी टंकी बनती हुई दिख रही है पेड़ो का रंग हरा--

बोर्ड का रंग नीला दिख रहा है बोर्ड पर द हैल्थ पॉइन्ट लिखा हुआ दिख रहा है निचे गाड़ी खड़ी हुयी दिख रही है।

सीढ़ियां दिख रही है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।